उस दुकान के बाहर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और कुछ औरतें भी खड़ी है। दुकान के बाहर फूलों की माला सजी है।

उसके सामने एक सेवन अप का पोस्टर लगाया गया है।

साइड में मिरर लगा हुआ है।

यह एक प्लेटफार्म का दृश्य है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन लगे हुए हैं। बीच में माल ढोबा गाड़ी लगा हुआ है तथा साइड में पैसेंजर गाड़ी लगा हुआ है।

इसके आर-पार जाने के लिए पुल बनाया गया है इसमें तीन प्लेटफार्म है इस तीनों प्लेटफार्म पर दो प्लेटफार्म पर ट्रेन लगी हुई है तथा एक खाली है।